बाइक पे एक आदमी अ शल्ट और लूंगी पहने हुए बैठा उसके पैरों में चप्पल है। गले में अंगोछा है।

ये एक ढाबा है यहां पर पंजाबी ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है एक रेड कलर की शर्ट पहने हुए आदमी है।

यहां पर अह पंजाबी ढाबा लिखा हुआ है।

ये भारत पेट्रोलियम है और यहां ये यहां पा जे चारो तरफ से--

और एक सफेद रंग की कार खड़ी है ऊपर लाइटिंग भी है।

और एक प्लास्टिक की अ चेयर रखी हुई है।

यहां पर एक स्टील की प्लेट में कुछ लीची रखी हैं।

यहां पर लीची के चार गुच्छे रखे हुए है।

यहां पर एक कार खड़ी हुई जो ब्लैक रंग की है।

आलू ओ और प्याज ये सारा कुछ रखा हुआ है संतरे रखे हुए हैं।

दो बैग रखे हुए हैं। जंगला जंगले पे कुछ सामान रखा हुआ है। एक अलवाडी है। अलवाड़ी के ऊपर सामान रखा हुआ है।